उसको लकड़ी के उससे पैक किए हुए हैं उसके अंदर सीमेंट भर रहे हैं।

बहुत सारा पेड़-उड़ दिख रहा है और घर का कलर पीला है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ग्राउंड काफी साफ और स-सुंदर दिख रहा है।

व्हाइट कलर का घर के साइड साइड में बहोत सारे पेड़ वेड़ है।

और नीचे बॉर्डर में थोड़ा सा ब्लैक मारा गया है उसके ऊपर डाक पार्सल का सिंबल बनाया गया है और--

थोड़ा जगह छोड़ा गया पार्सल डालने के लिए और उसके बगल में डाक पार्सल के एक आदमी बैठा हुआ है।

और बाइक का बहोत सारा पोस्टर भी लगाया गया दीपा दीवाल पे और अलग अलग कलर कलर का बाइक रखा गया है यहां पे--

और इस शहर में सोनार की दुकान है और गेट के पास बहुत सारा सजावट किया गया और एक आदमी बोर्ड के पास खड़ा हुआ दिख रहा है।

उसके बगल में दो दुकान और हैं उसमें भी बोर्ड लगाया गया हैं ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हैं।